इसमें मुझे एक बॉल सफेद दिखाई दे रही है। आ ऑरेंज दिखाई दे रही है और रेड कलर की दिखाई दे रही है।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

बिल्डिंग के नीचे मुझे गार्डन दिखाई दे रहा है। गार्डन में कुछ लोग दिख रहे हैं। आस-पास मुझे काफी सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं जो कि ग्रीन कलर के हैं।

सामने की साइड मुझे लाइट लगी हुई दिख रही है। लाइट व्हाइट कलर की है। अ इसमें मुझे खिड़की भी दिखाई दे रही है और दरवाजा भी दिख रहा है ।

पिंक और व्हाइट है। आस-पास मुझे काफी सारे लोग दिखाई दे रहें हैं। बस के पास में ही एक और बस दिखाई दे रही है।

चेयर पर कोई बैठा हुआ है। नीचे की साइड मुझे अं ग्रीन --

इस पिक्चर में मुझे काफी सारे लोग दिखाई दे रहे हैं और कुछ औरतें भी दिखाई दे रही हैं।

कुछ झाड़ दिखाई दे रहें हैं जोकि ग्रीन कलर की हैं। इसमें लाइट भी दिख रही है। एक झंडा दिख रहा है जोकि रेड कलर का है। ।